मोर दिखाई दे रहा है।

और मुझे गोब्बर से पाथी हुई --

हरियालियां हैं और बोहोत सारे बड़े-बड़े --

खड़ी है बिकने के लिए।